टंकी है जो नीले और सफेद रंग की दिख रही है यहां पे दो मरकरी लगी हुई है यहां पे कुछ आदमी खड़े हुए है।

इसके आस-पास टीन के तख्ते पड़े हुए है और बत्ती के तार लगे हुए है जो काले रंग के दिखाई दे रहे है इसके आस-पास बहुत सारे पेड़-पौधे भी है यहाँ पे कुछ लोग आपस में बात कर रहे है।

यहाँ इसके अंदर एक आदमी अम फोटो खींच रहा है यहाँ पे एक टंकी रखी हुई है।

इस कमरे में एक ए_सी लगी हुई है और बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं यह कमरा गुब्‍बारों से सजा हुआ है।

इसके आस-पास बहुत सारे पेड़ पौधे भी है यहाँ पे सूरज की रौशनी भी आ रही है।

यहां पे कुछ घास जमी हुई है यहाँ का मौसम नीला और बैगनी दिख रहा है यहाँ पर पेड़-पौधे बहुत हैं।

यहाँ पे एक पुल बना है जो लकड़ियों का बना हुआ है यहां पे बहुत सारे पेड़-पौधे लगे हुए है।